हमे यहा पर स्टेज भी दिखाई दे रहा है। हमे यहा पर बहुत सारे पर्दे हमे यहा दिखाई दे रहे है। हमे यहा पर फूल्स दिखाई दे रहे है। हमे यहा पर बलून्स दिखाई दे रहे है और सफेद-सफेद कुरसिया दिखाई दे --

हमे यहाँ पे लाइटिंग भी दिखाई दी रही है। हमे यहाँ पर बहुत सारा पानी भी दिखाई दे रहा है। हमे यहाँ पर खिड्किया दिखाई दे रही है।

हमे यहा पर बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है। हमे यहा पर बहुत सारे बल्ब दिखाई दे रहे है। हमे कुरसिया दिखाई दे रही है। हमे बहुत सारे गमले दिखाई दे रहे है। हमे यहा पर फूल दिखाई दे रहे है।

हमे यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स दिखाई दे रहे है हमे यहाँ पर दुकान दिखाई दे रही है हमे यहाँ पर एक कार दिखाई दे रही है जो कि लाल कलर की है हमे यहाँ पर कार पर रिबीन्स दिखाई दे रहे है हमे यहाँ पर डॉल्स दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है हमे यहाँ पे स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है हमे यहाँ पर बहुत सारी ड्रॉईंग दिखाई दे रही है हमे यहाँ पर मोर दिखाई दे रही है मोर के ड्रॉईंग दिखाई दे रही है।

हमे यहाँ पर बहुत सा एक बड़ा सा सड़क दिखाई दे रही हमे यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले दिखाई दे रहै है हमे यहाँ पर एक लाइटिंग का खंबा दिखाई दे रहा है लाइटिंग के--

हमे यहा पर एक गुफ़ा दिख रही है हमे यहा पर हरे हरे पत्ते भी साथ मे दिख रहे है यहा पर--

हमे यहाँ पर पोस्टर्स दिखाई दे रहे है। हमें यहाँ पर बहुत सारे तार हमे यहाँ दिखाई दे रहे है। हमें यहाँ पर नीला आसमान यहाँ पर पर दिखाई दे रहा है।